एक शोरूम वो आएगा वह कट जहां देखो कि जहां देखो कि एक लड़का खड़ा हुआ--

देख सकते हो के जनरल स्टोअर है और जनरल वर्ल्ड है देखो कि जहां रेता गिट्टी--

कपड़ा लगा हुआ है कुछ रखा हुआ है और देखो की आजू-बाजू बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए यहां देखो की आसमान खुला हुआ बहुत और बाजू में कूलर लगा हुआ --

देख सकते हो कि एक योगा स्कूल है। देखो यह योग स्कूल है जहां जस्ट देखो दो तीन लड़कियां योगा कर रही हैं।

देखो के बोहोत दूर-दूर तक देखो के झूले लगे है पेड़ लगे हुए है बोहोत गेहरा --

पीछे देखो कि पंखे बाजू में कोई एक लड़का मोबाइल चला रहा है वो देखो पैटो पंखा एच_पी दिख रहा हुआ उसके पीछे देखो खंभा लगा हुआ बिजली का से पीछे देखो कि लैन से--

देख सकते हो कि एक मार्केट है जहां मार्केट के नीचे ये गेट लगा हुआ गेट क्यों ऑरेंज कलर का है बाजू में खंभा लगा हुआ बहोत सा मार्केट --

देख सकते हो कि एक रामदास भं प्रसाद भंडारा है हनुमान जी का।

आजू-बाजू देखों चाय की दुकान है कड़हीया रखी है समोसे की दुकान है आजू-बाजू देखो समोसे भी रखे हुए है चाय भी है।

देख सकते हो शर्मा ऑटो डीलर है देखो आजू बाजू देखो की कार खड़ी हुई है कार के बाजू में दो तीन बाइक खड़ी हुई एक साइकिल खड़ी हुई एक बिल्डिंग है।

बिल्डिंग में शटर लगे हुए ताले लगे हुए हैं यानी ऑफिस टाइप का है देखो की भाई बिल्डिंग के सामने देखो की एक बैनर लगा शर्मा शर्मा जी का--

देख सकते हो कि एक अस्पताल है अस्पताल का है चेम्बियार आजू बाजू देखोगे काउंटर में सामने एक कुर्सी लगी हुई है।

भाई इसके नीचे देखो की भाई गाडियां लगी हुई है एक ट्रक है।

कार तो एक नंबर कार है उसके बाजू में कुछ लोग बैठे हुए हैं देखो बिजली खंभा है दूर दूर तक इसके तार फैले हुए हैं स्टेशन के नीचे देखो की--

देख सकते हो कि एक वॉटरफॉल है देखो कि वॉटरफॉल बहोत तेजी से पानी आएगा इसके झरने है एक से दो तीन चार पांच--

देखो कि एक दूध डेरी है बर्तन दूध डेरी फार्मा --

देखो की भाई बे अस स्टेट अस्पताल हैं देखो आजू बाजू जान बहोत सी लाइन लगी हुई हैं अस्पताल के अंदर जाने के लिए भाई--

देख सकते हैं एक मंदिर है मंदिर के एंट्रेंस के अंदे को बाहर--

फुग्गे बेच रहे हैं चप्पल लगी हुई है क्योंकि स्टैंड के लिए--